यहाँ पे एक्सरसाइज की मशीन रखी हुई है और जो मशीन है वो --

कुछ डीजे वगेरा भी रखे हुए हैं पीछे की साइड पर।

और एक और कार है जो सफ़ेद कलर की है और ऊपर की साइड --

और कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे पीछे कि साइड पे काफ़ी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उपर नीला आसमान दिख रहा है।

एक बल्ब है बट वो जल नहीं रहा है काफ़ी सारी किताबे रखी हुई हैं। दुकान के सामने कुछ लोग --

एक इन्सान खड़ा है। ऊपर कि साइड सफेद मकान पे एक लेडी खड़ी हुई है। साइड में एक काऊ दिख रही है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और लाइट के तार भी दिखाई दे रही है यहाँ पे बहोत सारे।

यहाँ कुछ संगीत प्रोग्राम हो रहा है जिसमें एक इन्सान से सितार बजा रहा है और एक इन्सान तबला बजा रहा है।